लिनक्स में सिंपल फिल्टर्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यहाँ हम हेड टेलसोर्टकट और पेस्ट के बारे में सीखेंगे
यह सारे कमांड लाइन टेक्स्ट मनिप्यूलेशन टूल्स हैं
यदि आप टर्मिनल पर हैशचिन्ह देखते हैं तो आपको उन कमांड्स को निष्पादित करने के लिए रूट बनाना होगा
यदि आप टर्मिनल पर डॉलर चिन्ह देखते हैं तो एक सामान्य उपयोगकर्ता उन कमांड्स को निष्पादित कर सकता है
मैं ये मानती हूँ कि आपने डिफॉल्ट इन्स्टालेशन की है और पाथ में कहीं बदलाव नहीं लाया है जहाँ फाइल्स सेव हो रही हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं लिनक्स इस्तेमाल कर रही हूँ
इस भाग के लिए आपको माउस तथा कीबोर्ड का प्रयोग करना और विंडो पर मैक्समाइज़ तथा मिनीमाइज़ बटंस का प्रयोग करना आना ज़रुरी है
एक फाइल की पहली 10 लाइन्स को प्रदर्शित करने के लिए हम हेड कमांड देते हैं उसके बाद एक अस्की फाइल नेम देते हैं
चलिए फाइल बनाते हैं
एप्लिकेशंस जीटी एक्सेसरीज जीटी टेक्स्ट एडिटर पर जाएँ
समय की कमी के कारण मेरे पास यह नम्बर्स पहले से ही एक और फाइल में हैं
जिन्हें मैं कॉपी और पेस्ट करूँगी
फाइल पर हिट करेंSaveसेब करें
फाइल को numbersटीएक्सटी नाम दें और सेव पर क्लिक करें
इस फाइल को बंद करें
अब एप्लिकेशंस जीटी एक्सेसरीज जीटी टर्मिनल पर जाएँ
अब देखने की कोशिश करते हैं जो फाइल हमने बनाई थी यदि हम उसे देख सकते हैं
एलएस टाइप करें और एंटर दबायें
हमने यहाँ जो किया उससे हमारी होम डाइरेक्टरी पर सभी फाइल्स तथा फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे
हमने जो फाइल बनाई है उसके कंटेंट्स को पढ़ने के लिए कैट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं
कैट numफाइल नेम को ऑटोफिल यानि अपने आप आने के लिए टैब दबायें और एंटर दबायें
चलिए ऐसा ही हेड कमांड के साथ करते हैं
हेड numbersटीएक्सटी एंटर करें
अब पहली दस लाइन्स प्रदर्शित हुई हैं
यदि हमें पहली पाँच लाइन्स देखनी हैं तो हेड कमांड तथा फाइल के बीच n5 ऑप्शन का प्रयोग करें
अप एरो n5 दबायें और एंटर करें
अब सिर्फ पहली पाँच लाइन्स प्रदर्शित हुई हैं
प्रेज़न्टैशन पर वापस चलते हैं
टैल कमांड हेड कमांड के बिलकुल विपरीत काम करती है यह डिफॉल्ट रूप से आखिरी दस लाइन्स प्रदर्शित करती है
टर्मिनल पर वापस जाने के लिए मैं ALT Tab आल्ट टैब प्रेस कर रही हूँ
टैल numbersटीएक्सटी यदि हमें आखिरी पाँच लाइन्स देखनी हैं तो टैल कमांड तथा फाइल नेम के बीच n5 ऑप्शन का प्रयोग करें
हाइफेन एन5 एंटर करें
स्लाइड्स पर वापस चलते हैं
एक लॉग फाइल में सिस्टम में हुए इवेंट्स यानि कार्यक्रम मौजूद होते हैं
authलॉग फाइल जो लॉगिन होते हैं तथा जो लॉगआउट होते हैं उनका लॉग बनाए रखता है
टैल कमांड का सबसे उपयोगी ऑप्शन है -f ऑप्शन का प्रयोग कर लॉग फाइल की टेल का अनुसरण करना
यदि लॉग फाइल में एक नई लाइन जोड़ी जाती है तो टैल कमांड उसे आखिरी लाइन मानेगा और डिफॉल्ट रूप से इससे ऊपर दस लाइन्स दिखाएगा
टर्मिनल पर जाएँ
टैल f varlogauthlog इस टर्मिनल की साइज़ बदलते हैं
चलिए एक और टर्मिनल ओपन करते हैं एप्लिकेशन gt एक्सेसरीज gt टर्मिनल
टर्मिनल का साइज़ बदलते हैं
ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर बता सकें कि लाग फाइल में टैल आखिरी लाइन का कैसे पालन करता है
सू की अपने रूप में कोशिश करें एंटर दबायें
कुछ गलत पासवर्ड दीजिए और एंटर प्रेस करें
आप देखेंगे कि टर्मिनल पर टेल जो रन हो रहा है एक नए लॉग के साथ जोड़ा गया है
तारीख और समय निर्दिष्ट करती है कि कब ऑथेन्टीकेशन यानि प्रमाणीकरण विफल हुई है
डेट टाइप करें सिस्टम की डेट तथा टाइम को जांचने के लिए एंटर दबायें
इस टर्मिनल को बंद करने के लिए एक्सिट टाइप करें
रनिंग टैल कमांड को बंद करने के लिए CTRLC प्रेस करें और टर्मिनल को मेक्सीमाइज़ करें
हमने पिछले उदाहरण में सिर्फ authलॉग फाइल देखी
यह लॉग फाइल्स लिनक्स में आमतौर पर इस्तेमाल होती है
यदि कोई समस्या है तो लिनक्स सिस्टम ऐड्मिनिस्ट्रेटर उसकी मशीन को ट्रबलशूट करने के लिए इन लॉग फाइल्स में अधिक जानकारी पाने के लिए देखेगा
सोर्ट कमांड जैसे कि नाम से पता चलता है एक फाइल को हमारे लिए दोनों आरोही तथा अवरोही क्रम में सोर्ट यानि छांटती है
numbersटीएक्सटी यह हमारी फाइल को आरोही प्रकार में क्रमबद्ध करेगा
ध्यान दें कि कुछ अजीब है यहाँसोर्ट करते वक्त सोर्ट बस पहले अक्षर को देखता हैइसलिए 1011एएमपी12 नम्बर 2 के पहले आता है
इससे बचने के लिए ऑप्शन n को जोड़े और एंटर प्रेस करें
अब सोर्ट पूरे नम्बर को देखता है उन्हें सोर्ट करने के लिए
numberटीएक्सटी को उलटे क्रम में सोर्ट करने के लिए ऑप्शन r को जोड़ें
इस फाइल में नम्बर्स हैं जो दुबारा आए हैं विशिष्ट नम्बर्स को निकालने के लिए -u ऑप्शन के अन्य ऑप्शन को जोड़ें
टर्मिनल पर जाएँ
अप एरो उ एंटर करें
पिछली बार दो 2 दिखाए थे और अब सिर्फ एक 2 दिख रहा है
अब हम देखेंगे कि किसी कालम के आधार पर कैसे एक फाइल सोर्ट कर सकते हैं
चलिए एक फाइल बनाते हैं और की इन करें जैसे कि बताया गया है
एप्लिकेशन जीटी एक्सेसरीज जीटी टेक्स्ट एडिटर पर जाएँ
समय की बचत के लिए पहले से ही एक अलग फाइल में डेटा है जिसे मैं कॉपी और पेस्ट CTRLC CTRLV करती हूँ
फाइलmarkstxt नाम से इसे सेव करेंसेव पर क्लिक करें
मैं नहीं चाहती कि कोई भी कम अंक मिलने पर मुझे कुछ कहे
इस फाइल को बंद करें
marksटीएक्सटी फाइल के दूसरी कालम के आधार पर सोर्ट करें
टर्मिनल पर जाएँ
स्पेस मार्क्स डॉट टीएक्सटी स्पेस हाइफेन ट स्पेस ओपन इनवर्टेड कॉमास स्पेस क्लोज इनवर्टेड कॉमास स्पेस यहाँ -t डैलिमीटर के लिए है और कोट्स के बीच का स्पेस उसे दर्शाता है
हाइफेन क2 दूसरे कालम के लिए है जिसपर सोर्ट प्रदर्शित होगा
एंटर प्रेस करें
कैट मार्क्स डॉट टीएक्सटी यह ओरिजिनल फाइल है यदि आप देखते हैं कि अवीर ऊपर चला गया और बाला नीचे आ गया है जब हमने दूसरे कालम के आधार पर सोर्ट किया
कट कमांड का उपयोग एक फाइल से कुछ जानकारी कट करने के लिए किया जाता है
चलिए marksटीएक्सटी में से कुछ नाम निकालते हैं
टर्मिनल ALTTab पर जाएँ
कट स्पेस मार्क्स डॉट टीएक्सटी स्पेस हाइफेन डी स्पेस ओपन इनवर्टेड कॉमास स्पेस क्लोज इनवर्टेड कॉमास स्पेस
यहाँ कट कमांड में डी एक डैलिमीटर है और उद्धरण चिन्ह के भीतर का स्पेस डैलिमीटर को दर्शाता है
हाइफेन फ़2 दूसरे कालम के लिए एंटर प्रेस करें
पस्ते कमांड फाइल्स की समरूपी उत्तरगामी लाइन्स को मर्ज करेगा यानि जोड़ेगा
अब numbersटीएक्सटी तथा marksटीएक्सटी दोनों फाइल्स का प्रयोग करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ
numbersटीएक्सटी marksटीएक्सटी पेस्ट करें और एंटर दबायें
अब marksटीएक्सटी की पहली लाइन numbersटीएक्सटी की पहली लाइन से जोड़ी गई है
आउटपुट को concatefileटीएक्सटी नामक फाइल में पुनः निर्दिष्ट करने के लिए हम redirectरिडाइरेक्ट की का प्रयोग कर सकते हैं
टर्मिनल पर जाएँ
एंटर प्रेस करें
कैट कॉनकैटफाइल डॉट टीएक्सटी अब स्लाइड पर जाएँ
यदि हम चाहते हैं कि पेस्ट नम्बर्स को क्रमानुसार दिखाए टैब द्वारा उसे डीलिमिट करें हम -s ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं
पेस्ट हाइफेन एस
नंबर्स डॉट टीएक्सटी स्लाइड पर जाएँ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
जिसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है
अधिक जानकारी हमारी निम्नलिखित वेबसाइट httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है